रेड बोर्ड पर बाल दाढ़ी स्पा एंड सलून लिखा हुआ है और सिज़र बनी हुई है। उसके बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है जो येलो --

टीशर्ट पहना है ग्रीन लोअर पहना है ब्लू चप्पले पहना है और ब्लैक मार्बल लगा सीढ़ियों पर।

एक सर सेल्फ़ी ले रहे हैं फोटो ले रहे हैं पीछे दो आंटियां बैठी हुई हें।

व्हाइट कलर और स्काई ब्लू कलर का बोर्ड लगा है जिस पर अनमोल लिखा है नोट लिखा है दही घी पनीर रसगुल्ला गुलाब जामुन--

ये एक शादी हॉल का फोटो है जहां पे दूल्हा-दुल्हन खड़े हुए है बहुत सारे लोग है बेग रखा है लाइटिंग जल रही है।

ये एक स्टेज का फोटो है जहाँ पर लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी लिखा हुआ है।

ये एक स्कूल के अंदर का फोटो है ब्लू कलर की साड़ी पेहनी है आंटी ।

बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है टीचर बैठे है कुर्सी पर जो टी-शर्ट पेहनी हुए है।